यह एक शॉप है जहाँ पे बहोत सारी मिठाईयाँ बिकती हैं। यहाँ पे कोको कोला की इस्परा अम् अ कोको कोला भी बिकता हैं। यहाँ पे बहोत सारी मिठाईयों की दुकान हैं। यहाँ पे बहोत सारी मिठाईयाँ बिकती हैं।